और एक व्हाइट कलर की चादर बिछी है। एक आदमी है।

और बाहर कुछ हरे भरे पेड़ लगे है।

एक फ्रिज भी रखा है जिसमें कुछ बोतल है।

यहां कुछ कार खड़ी हैं और हरे भरे पेड़ भी हैं।

यहां बहोत सारे आदमी है और हरे भरे पेड़ भी हैं।

ये एक हॉल बना हुआ है जिसके चारो तरफ कमरे बने है।

आदमी है और हरे भरे पेड़ है।

में एक आदमी का चेहरा छुपा हुआ है।

और उनका कुछ आदमी बैठे हैं।

बाहर बहुत खुला ग्राउंड पड़ा है।

और पीछे एक पर्दा लगा है।

यह एक झील है जिसमें बहुत सारा पानी बह रहा है।

जिसपे लिखा है सत्यम ऑटो सर्विस सेंटर ।

ये एक बहोत बड़ा है।

और कुछ बाइक भी खड़ी है ऊपर ग्रिल लगी है।

और एक फ्रिज भी है जिसमें कुछ बोतल रखी है एक आदमी खड़ा है।